इस इमेज में एक जंगल दिखाई दे रहा हो यहाँ पे एक रोड भी यहाँ पे एक रोड भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक बड़ी-बड़ी पहाड़े दिखाई दे रही है छोटी-छोटी घाँस लगी हुई दिखाई दे रही है।

बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है यहाँ पे--

--कुछ फाइल्स रखी हुई दिखी दे रही है कुछ पन्नी रखी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे खिड़की भी दिखाई दे रही है यहाँ कला कलर फाइल दिखाई दे रही है।

कुछ लोटा रखा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ गुड्डे रखे हुए दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में एक बड़ा-सा मैदान दिखाई दे रहा है मैदान में कई सारे भवन दिखाई दे रहे है यहाँ पर बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

और यहाँ पे काफी सारे भवन बड़े-बड़े दिखाए दे रहे है।

रखा हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर भी अलमारी है जिसमे बक्से मे कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में बड़ी सी सड़क दिखाई दे रही है सड़क के किनारे काफी सारी दुकान दिखाई दे रही है जो की काफी बड़ी-बड़ी दिखाई दे रही है।

छोटी-छोटी घाँस लगी हुई दिखाई दे रही है बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए दिखाई दे रही है बीच में पानी बेहता हुआ दिखाई दे रहा है ओर एक द दीवाल भी दिखाई दे रही है दीवाल के पीछे भी बड़े-बड़े पेड़--

खिड़कियाँ बंद दिखाई दो खिड़कियाँ दिखाई दे रही है जोकि बंद दिखाई दे रही है यहाँ पर पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे है और लाइट जलती हुई दिखाई दे रही हैं ।

इस इमेज में एक चर्च दिखाई दे रहा है जिसको डेकोरेट किया हुआ दिखाई दे रहा है कलर वाये लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है।

कैमरे में फोटो लेते हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर पुलिस भी दिखाई दे रही है और

और यहाँ पे पंखे भी दिखाई दे रहे है लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है।